ज़मीन है पक्का एक ग्रीन कलर का एक बोतल टंगा हुआ है और जो आदमी है वो कुर्ता पहना हुआ है सादा रंग का और जो लड़का है बच्चा वो एक शर्ट पहना हुआ है वाइट कलर का।

ये एक बहुत बड़ा घर दिख रहा है जो वाइट कलर का है और उसका बॉर्डर रेड कलर का है एक गाछ दिख रहा है तार गाछ एक और गाछ दिख रहा है।

यहाँ पे दो आदमी खड़े हुए दिख रहे है एक के कुछ लिखा हुआ दिख रहा है शहबाजगंज।

टूवीस और एक वाईट कलर का बस हैं और उसका शीशास ब्लैक कलर का हैं और एक जीप हैं जो वाईट कलर का हैं ।

यहाॅं पर भी दो बस दिख रहे हैं एक बस का कलर पीला कलर का है और उसका रेड थोड़ा-सा रेड उसमें दिख रहा है और एक लाईट लगी हुई है बड़ी-सी जिसमें व्हाइट कलर की बत्ती जल रही है।

और एक और बस है जो ब्लैक कलर का है ग्रीन कलर का उसका बॉर्डर है और लोहा का उस पर ग्रिल लगा हुआ |

कलर का कार दिखाई दे रहा है एक व्हाइट कलर कार --